यहाँ पर हमे स्टेडियम दिखाई दे रहा है जो की हॉकी खेल रहे हैं और कुछ लोग नीली टी शर्ट पहने है और कुछ लोग लाल शर्ट की अलग-अलग टीम के है।

यहाँ पर एक दरवाजा सा है जो की बहुत दिख रहा है वो भी बहुत बड़ा है बहुत पुराना हो चुका है खंडरों से बना हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग सी बनी दिखाई दे रही है जो की काफ़ी हरी-भरी चमकदार है और वहाँ पर जीने भी लगे हुए हैं बहोत सारे पेड़ पौधे भी हरे है हरे-भरे बहुत सुंदर लग रहें हैं।

यहाँ पर हमे आसमान कुछ बहुत ही रंगीला दिखाई दे रहा है जैसे की काले और सफेद बादल और हरी आसमान कलर कि नीली बादल छाए हुए हैं जो कि काफ़ी सुंदर है।